पौधे भी है और आसमान काला दिख रहा हैं।

दिख रह हैऔर घड़ी ह भी हैऔर लाइट भी लगे हैऔर बैठने के भी साधन है यहाँ पे।